पौधे भी दिखाई दे रही है एक दो लंबे-लंबे पेड़ दिखाई दे रही है यहा बहुत अच्छे से--

यहा एक ट्रैक्टर पेड़ दिखाई दे रहे है यह एक धुआ धुआ दिखाई दे रहे है बहुत सारा सामान मे दिखाई दे रहे है बहुत से लंबा रोड दिखाई दे रहा है यहा पर --